गमले और पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और यहां पर आदमी भी बैठे हुए है और लाइटे भी लगी हुई है।

और यहां पर आग जली हुई है।

और यहां पर बल्ब बल्ब भी लगे हुए हैं और सोफे भी बिछे हुए हैं।

कुर्सियां भी धरी हुई है।

यहां पर हमें एक घर दिख रहा है जिसमें लाइटें लगी हुई है।

यहां पर एक घर दिख रहा है जिसमें पत्थर लगा हुआ है और यहां पर गेट भी दिख रहा है और इस घर में लाइटे भी लगी हुई है।

यहां पर एक ये ढाबा दिख रहा है जहां पर एक बाइक खड़ी हुई है और अंदर यहां पर बहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है और अंदर आदमी भी बैठे हुए हैं।

बड़ी बड़ी माला भी टंगी हुई है फूल भी रखे हुए हैं।

यहां पर हमें ये पहाड़ों में--

ये हमें दुकान दिख रही है जी--

मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें यहां पर बहोत सारे आदमी फिर रहे है।

और यहाँ पर टेम्पो भी खड़ा हुआ है।

पंखा भी लगा हुआ है।

यहां पर एक ब्यूटी पार्लर दिख रहा है।

पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर ये परचून की दुकान दिख रही है।

यहां पर एक चित्र में एक घर दिख रहा है।

ए_सी भी लगी हुई है और यहां पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है और यहां पर झंडा भी लगा हुआ है।